उसके सामने ढेर सारी बाइकें और कार खड़ी हुई हैं दो आदमी रोड पर चल रहे हैं।

रोड पे डिवाइडर है। सफेद और लाल रंग की बिल्डिंग थी नीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं बिल्डिंग पर --

ढेर सारे लोग नीचे हॉल में खड़े हैं। पिलर हैं बड़े-बड़े।

जिस पे कुछ आदमी और औरतें फोटो खींचा रहे हैं। साथ ही में सीमेंट की बनी हुई जमीन है। कुछ केले के पत्ते हैं।

साथ में एक सफेद रंग का शर्ट पहने एक आदमी खड़ा है। बस के अंदर कुछ आदमी खड़े हैं। सीटे हैं बस के अंदर।